मस्जिस्द में कुछ इंग्लिश में उर्दू में लिखा हुआ है।

यह एक दुर्गाजी का मंदिर दिख रहा है।

ए ऊपर पे अ शैलपुत्री माता जी लिखी हुई है।

यहाँ एक लड़का ब्लेक कलर कि बनियान और ब्लेक कलर का पेंट पेहने हुए खड़ा है।

यहाँ कोई बहुत सारी जिम की मशीनें है एक्सरसाइज करने की।

नीचे बहोत सारी दुकाने हैं। जैसे सावरियां फैशन हाउस कि भी एक शॉप दिख रही है।

यहाँ एक टेबल है। टेबल के चारो ओर में चेर रखी हुई दिख रही है।

मंदिर में कोई आ पंडित जी बैठे हुए हैं।

पीछे लाइटिंग भी दिख रही है जलती हुई --

कुछ यहाँ पे (पर) कुण्डियों में पेड़ भी लगे दिख रहे है।

कुछ बच्चों ने ब्लैक कलर के शूज पहन रखे है।

कुछ गाड़िया खड़ी हुई है।

रास्ते में यहाँ साइड में कुछ सीढ़ियां दिख रही हैं।

आस-पास बहोत (बहुत) सारे पेड़ नज़र आ रहे है।

कुछ मछलिया छोटी है तो कुछ मछलिया बड़ी भी दिख रही है।

उसने वाइट और ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखी है।

एक लेडिस के हाथ में पर्स दिख रहा हे।

यहां बहुत सारे लोग आस-पास दिख रहे है।

जिसमे बहुत सारे इलेक्ट्रिक कार भी है।

काउन्टर के ऊपर भी बहोत सारी कोल्ड्रिंक्स रखी हुई दिख रही है।

यहाँ साइड में एक जय श्रीनाथ करके --

यहाँ बहोत सारे पेड़ भी हैं। एक खंभा लगा हुआ दिख रहा है।

जो पत्थर की है। साइड में कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

सामने एक छोटा मंदिर बना है।

जिसने मास्क और कान भी बांध रखे है।

यहां पे वह मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग दिख रहे है।

यहाँ हल्की सी बारिस हुई है।